दो खिड़कियां है यहाँ घर जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन ये होटल है कल्पना सपना कवर्धा--

इसको यहाँ पर चार पहिया है यहा पर झालर लाईट से सजाया गया है और यहाँ कोई शहर या गांव में बना हुआ--

अ झालर दिखाई दे रहा है कुछ लाइट लगे हुए है बोहोत सारे मूर्तियाँ बनी हुई नीचे --